ये एक रूम है इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सोफे हैं अच्छा फर्नीचर लगा हुआ है यह किसी होटल रेस्टोरेंट का रूम दिख रहा है।

अ लंच टाइम लग रहा है ये इस हिसाब से लोग वेटिंग में कतार किये हुए बैठे हैं चेयर पे--

ऐसी जा रहे है कहि उनके उनके निश्चित जगह पे--

सामने एक बहुत बड़ा अरीसा दिख रहा है उसके अंदर वो लोग मोटीवेट होके योगा कर रहे हैं सामने एक व्हाईट कलर की अच्छी सी दीवाल है एक स्टीकर भी लगा हुआ है।

इस चित्र में एक ग्राउंड दिख रहा है।

ध्वज लगे हुए हैं ये किसी बिल्डिंग से कम नहीं है अच्छा नज़ारा है पेड़ हैं पौधे हैं गाड़ी है।

पुरुष भी जा रहा है नजारा अच्छा है पेड़ पोधे भी दिख रहे हैं।

वो किसी पोधे के साथ उसका फोटो ले रहा है पीछे--

इस दृश्य में दिख रहा है घर छोटा सा दिख रहा है वो कलर किया हुआ है नील रंग से --

बहार खुला मैदान जैसा दिख रहा है उसमें ऐसे ही बहोत सारे पेड़ पौधे उग चुके हैं।

इस दृश्य में इस पिक्चर में दिख रहा है ढेर सारी गाड़िया दिख रही हैं।

एक बंदा दिख रहा है जो जिम में कसरत कर रहा है एक अंकल है बाजू में उन्हें मोटीवेट कर रहे हैं।

नजारा से लगता है कि वो लोग बहोत ही ऐसे अच्छे माहोल में बेठे हैं।

लग रहा है मछली अभी अभी ताज़ी ताज़ी लायी गई है।

लगा हुआ एक ग्राउंड दिख रहा है और कोई तो दिख नही रहा है नजारा बहुत ही अच्छा है।

चेयर्स लगी हुई है गमले लगे हुए है डीफ्रंट डीफ्रंट कलर के गमले हैं।

जमीन नीली हो चुकी है पूरी लिली हो चुकी है।

और नजारा अच्छा है एक लोग के हाथ में एक बैग भी है।

पूरा वाईट कलर का कलर किया पेंट किया हुआ है नजारा अच्छा है दो गमले भी हैं।

बहोत ही खुबसुरत नजारा है किसी रेस्टोरेंट का कोड कॉर्डीनेट कोरडीनोर लग रहा है।

मार्केट दिख रहा है लोगों की अबर जबर है नजारा अच्छा है भीड़ बहोत ज्यादा ही है विंटर का माहौल है।

इसके अंदर ओरेंज कलर का शेड भी दिया हुआ है ऊपर के माले पे--

यहाँ पे गमले लगे हुए है बहोत ही नेचुरल व्यू दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर हम देख पा रहे है बहोत ही सुंदर नजारा दिख रहा है बड़ा सा प्ले ग्राउंड --

या फिर ग्राउंड या फिर खुली जगह दिख रही है ग्रीनरी से--

यहाँ फुटबॉल नेट भी लगाई हुई है लोगो कि भीड़ नही है।

यहाँ पे मुसलमान भई नमाज पड़ पढ़ते होगे वो अभी लाइक बेठे हैं।

दो बज के आठ मिनट का ये समय हमको दिख रहा है।

इस चित्र में हमको किसी गार्डन या किसी पार्क का नज--

इस चित्र के अंदर हमको किसी मेडिकल या फिर किसी स्टोर का नजारा है यहाँ पे एक--

नजारा अच्छा है पंखा है ल लाइट्स है कैमेरा है डेर सारी चीज --

इस चित्र में हम देख पा रहे पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनुमान लगा रहा है।

सायंटीफिक लैब का नजारा हमको नजर आ रहा है एक बड़ा सा रोकेट यहाँ पे पडा है।

गाडिया बहोत यहाँ पे सारी खड़ी हैं लाईट कि अच्छी खासी व्यवस्था है।

लोगों की बहुत सा बहुत ही भीड़ यहाँ पे हमको दिख रही है अलग अलग लाल नीले रंग की बसीस दिख रही हैं।

यह किसी ग्रोसरी स्टोर या फ्रूट मार्केट का ये--

योग डे हो सकता है इस वजह से इन ये बच्चे--

यह पेट्रोल पम्प का नजारा हमे चीज इस चित्र में देख पा रहे है लोगो कि भीड़ कम मालुम हो रही है।

बहोत ही सुंदर नजारा हमको इस चित्र में दिख रहा--

नजारा अच्छा है नायरिली का एक दो तिन बड़े बड़े पेड़ हमको दिख रहे हैं।

क्रीम कलर कि ये बिल्डिंग कलर से इनको किया गया है बहोत सारे पेड़ हैं एक पेड़ हमको कटा हुआ मालुम हो रहा है।

किया गया है एक ब स्कूल वान भी हमको दिख रही है।

इस चित्र के अंदर हम देख पा रहे है किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठने कि ये व्यवस्था हमको नजर आ रही है।

किसी रेस्टोरेंट का ये नजारा है रेस्टोरेंट ही लग रहा है बन्दों--

लोगो कि भीड़ काच का बना हुआ टेबल --

यह नजारा किसी तालाब का लग रहा है इसमें एक बोर्ट भी लगी हुई है।

तालाब के आजू बाजू बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ है नजारा अच्छा लग रहा है लोग यहां आ के बैठते होंगे।

इटो से बना हुआ ये बिल्डिंग लाल कलर क्रीम कलर का बिल्डिंग है।

ये जिम का नज़ारा हमको दिख रहा है एक बंदा है वो फोटो क्लिक कर रहा है।

लोग कि भीड़ नही लग रही है सुबह का अर्ली --